हेलो गाइस यहां पर एक बहोत बड़ी शॉप है जहां पर हर प्रकार के कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बहोत बड़ा गेट है जो की हरे कलर का लोहे का बना हुआ है पीछे बड़े बड़े पेड़ है जो की हरे भरे पत्तों से ढके हुए हैं।

हेलो गाइस यहां पर यहां पर पनिरियाँ लगाई गई है पनिरियाँ छोटी-छोटी पनिरियाँ हर प्रकार की जैसे की फुल के टमाटर की है गुलदस्ता में फूल --